और यह अलग अलग कंपनियों की मोबाइल है। यहाँ पर इंसान आकर अपनी चीजों के अनुसार हो जिसे अपना मोबाइल ले सकता --

तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बहोत सारी मरी हुई मच्छियां एक जगह टेबल पर रखी गई है। यह मच्छियां के ऊपर नमक डालने के कारण --

जिसे हम ट्रांसफॉमर्स बोलते हैं और यहां पर एक जगह पर एक आदमी बैठकर कुछ तारो को काट रहा है।

तो जैसा कहीं हमें देख सकते हैं। यह जगह है। जहाँ बड़ी-बड़ी इमारतें बनने वाली है। इस जगह को बनाने के लिए एक आदमी वहाँ खड़ा है।

कुर्सियाँ रखी गई हैं जोकि सोफ़े वाली कुर्सी है देखने में ऐसा लाग रहा है जैसे यहाँ पर कोई मूवी लगने वाली है जोकि लोग देखने के लिए आएंगे।

तो जैसा कि हम यह फोटो में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बोहोत ही बड़ा एलोवेरा का पेड़ है।

जैसा कि हम इस तस्वीर में देख सकते हैं यहाँ पर झूले के बने हुए बतक हैं।

लोहे से कड़ी सलियाएं रखी गई है और एक औरत यहाँ से मिट्टी लाने के लिए दूसरी ओर जा रही है। इसका काम अभी पूरा नहीं है।

तो जैसा कि हम यह तस्वीर में देख सकते हैं कि यह एक दुकान है जहां पर बहुत अलग-अलग तरीकों के जैसे कि आम का शरबत --

सेव का शरबत और भी बहुत ही प्रकार के सेव यहाँ पे ।

चीजें रखी होती है अपने मन के अनुसार।

तो जैसा कि हम यह फोटो में देख पा रहे हैं कि यहां पर एक सड़क पर एक आदमी है जो नीचे को ओर देख रहा है।

अपनी मनो की मनोकामनाएं मांगने के लिए यहाँ पे आते हैं। यहां पर आकर लोगों को बोहोत ही ज्यादा शांति और सुकून प्राप्त होता है।

यह कक्षा के बाद बच्चे अपना जो भी समय रहता है वो अपनी क्लास में बिठाते हैं जिनके कारण वो अधिक से अधिक पढ़ाई पर ध्यान दे सकें।

जहां पर वहाँ पर रहने वाले मरीजों को कोई तकलीफ ना हो और उसके सामने एक गाड़ी भी खड़ी है।

तो जैसा कि हम यह तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पर बोहोत ही सारी आवश्यकता अनुसार चीजे रखी हुई हैं। देखने में यह एक बोहत ही बड़ा बाजार है।